इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर बहोत सारे बच्चे बैठे ड्राइंग बना रहे हैं यहाँ पर एक टीचर मास्क लगाए देख रहे है।

इस तस्वीर हम देख सकते हैं यहा पे एक बार्बर एक व्यक्ति के बाल काट रहा है नीचे फर्स पे बहुत सारे बाल दिखाई दे रहे यहां पे हमे काच दिखाई दे रा है।